यह इस चित्र में एक दुकान दर्शाया गया है इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पर पहनावा साड़ी लिखा हुआ है।

यहां पर चेयर पर दो तीन आदमी बैठे हुए हैं।

एक येलो कलर की बिल्डिंग भी दिखाई पड़ रही है उसके बगल में पेड़ भी है।

यहां पर खाने के बहुत सारे सामान रखे हुए है दो चेयर भी लगा हुआ है।

बहुत सारे पुतले भी रखे हुए हैं अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं ऊपर फ्लोर का है जिसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हुए है।

यह किसी दुकान का चित्र लग रहा है जहां पर हैंगर में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

सामने छोटी से सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ है उसके पीछे एक टेबल रखा हुआ है इस पे एक बुक रखी हुई है।

बाहर गमले रखे हुए है जिसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए है अंदर सोफा पे बहुत सारे आदमी भी बैठे हुए है फ्लोर ऊपर नीचे उजला है।

इस चित्र में यह किसी सैलून का चित्र है जहां पर चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है दूसरे चेयर पर भी आदमी बैठा हुआ है।

एक आदमी भी खड़ा है जिसने काले कलर के कपड़े पहनी है ऊपर वाइट कलर के फो फ्लोर है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के बल्ब लगे हैं।

बड़े बड़े गेट नजर आ रहे हैं।

सजावट गोल तरह से की गई है जिसमें बहोत रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

बगल के दुकान में बहुत सारी बोरियां भी रखी हुई हैं दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा घर दिखाई पर रहा है जो कि व्हाइट कलर का--

सामने एक बहोत बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है।